अ गुब्बारे लगे हुए हैं जो की रेड और व्हाइट कलर के हैं यहां पर येलो और वाइट कलर के पर्दे भी लगाए गए हैं।

एक कलश रखा हुआ दिखाई दे रहा है और--

पेंट दिख रहा है और ऊपर की तरफ व्हाइट कलर की एल_ई_डी लगी हुई है।

वेल फर्नीचर इस रूम मैं दिखाई दे रहा हैं और दो बेड भी--

एक डी_जे गाड़ी नजर आ रही है और इस डी_जे गाड़ी में--

बहोत सारे बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्पीकर्स रखे हुए दिख रहे हैं।

हर एक सेक्शन्स में अलग-अलग तरह की आइसक्रीम्स रखी हुई --

और यहां पे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मेघानी परिवार--

अ फीस फिश एक्वेरियम की यह शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत सारे फिश पॉट --

लेडिस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहां पर बेंचेस लगी हुई है।

बाहर की तरफ दो तीन टू व्हीलर एक डस्टबिन रखा हुआ है और कुछ लोग यहां खड़े हुए हैं।

इस दुकान में दो गुलदस्ते लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमे एक ठेला दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति यहां बना रहा है दो व्यक्ति यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर की लोहे की एक शॉप दिखाई दे रही है और इसके अंदर--

एल्युमिनियम के कुछ पदार्थ से बना हुआ अजीब सा एक--

और यहां एक ठेले के ऊपर ये रखा हुआ है।

यहां लैंप भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट --

यहां पर हमें एक एयरपोर्ट का रनवे दिखाया गया है इस रनवे में एक व्यक्ति--

की शॉप नजर आ रही है यह एक--

और यहां पर एक दुकान के अंदर यह--

इस इमेज में हमें एक गार्डन नजर आ रहा है इस गार्डन में हरी हरी घास लगी हुई हैं।

सोचते हुए नजर आ रहे हैं।